पेड़ भी दिखाई दे रहे है कुछ हरी हरी पेड़ो पे पत्तियाँ दिखाई दे रही है।

भी दिखाई दे रहा है यहां पे --

गधे बिचारे बहुत ही मायूस से दिखाई दे रहे है --

पानी के अंदर ये पत्थर जिनपे हरी हरी छोटी छोटी घास निकली हुई दिखाई दे --

देखने में ना बहुत खूबसूरत है।

ये देखने में बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है यहां पे ।

लेडीज पार्लर लग रहा है ये मुझे --

मशीन है उसकी यहां पे दिखाई दे रही है सरस लगे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं।

और काफी सारे लोग है बैठे हुए है जो की मछलिया बेच रहे --

पर लिखा भी हुआ है इंडियन।

और सामने सूरज भगवान डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पर टीन सेट छाया हुआ है।

और इधर एक कुछ जड़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है क्या है ।

ये कहीं प्रोग्राम चल रहा है जहां पे --

यहाँ भी ट्रेडमिल रखी हुई है दो दो तीन तीन ट्रेडमिल दिखाई दे रही है।

स्टेज पे परफॉर्म कर रही है नीचे ग्रीन कलर का मैट भी लगा हुआ है।

कुछ प्लांट्स भी दिखाई दे रहे हैं लाइट्स दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक फील्ड दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ लेडीज --

इन्होंने ड्रेस अप भी कर रखा है पैट वगैरह लगाया।

दो दो स्कूटियां दिखाई दे रही है।

कुछ लोग अंदर से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने आसमान भी दिखाई दे रहा।

सूखे सूखे से पहाड़ में जिसमे पेड़ नहीं है पथरीले पहाड़ है।

बगल में एक डस्ट बिन रखा हुआ है।

वो भी दिखाई दे रहा है अंदर से कोढ़े भी है।

और एक डली यहां भी रखी हुई दिखाई नहीं।

यहां पे नीट दिखाई दे रहा है।

ये वोट भी लगा हुआ है केंद्र बैंक पार्ट वसाखा।

झरने दिख रहे हैं बहुत ही ऊंचाई से गिरते हुए नजर आ रहे हैं।

लड्डू वगैरह दिख रहे हैं लगे हुए।

चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे हैं।

लेटे हुए है अपने बॉडी --